उनके बाजु में दो स्त्रियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं।

उसी के बाजु में एक लाल रंग की गाड़ी भी खड़ी है।

बहोत सारी गाड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही है।